जिम कर रहा है मशीने जो की सारी काले रंग की है ऊपर एक पंखा लगा हुआ है।

ये एक नदी के किनारे एक आदमी मछलियां लगाकर बैठा हुआ हैं दो आदमी उससे--

साथ में घास उगी हुई है मिट्टी का जोकि जमीन है।

सूरज जोकि अस्त हो रहा है शाम का समय है।

ये एक कार गैराज है जिसमें एक आदमी की गाड़ी को ठीक कर रहा है।

गाड़ी के बोर्ड पार्ट्स को ठीक कर रहा है पानी की पाइप के साथ--

लगा हुआ है हरे रंग का पौधा है।

बहोत ही सुंदर है कुर्सियां लगी हुईं हैं ऊपर एक पंख लगा हुआ हैं।

और बहोत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया हुआ है।

सामने एक बहोत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ है सड़क के किनारे ये ढाबा है एक कूलर सामने दिख रहा है।

पार्टी का पार्टी का सजाया हुआ है बहोत ही सुंदर तरीके से--

बड़ी बिल्डिंग पीले रंग की दिख रही है एक गमला है जिसके अंदर फूल उगा हुआ है।

ये एक बहुत ही बड़ा समुंदर है समुंदर में--

काउंटर बहोत ही बड़ा है और सामने टेबल और चेयर लगे हुए हैं बहोत ही अच्छे तरीके से इसको सजा कर रखा हुआ है।